यहाँ पे कुछ पेंटिंग टंगी हुई है जो पता नहीं किसकी पेंटिंग है यहाँ पर हर एक कलर रंगीन पेंटिंग है जो फ्रेम मे तंगी हुई है जो नीली लाल हरी गुलाबी पीली--